यह हिंदी में लिखा गया है तो उसी के एक दीवार पर पोस्टर लगा हुआ है जो की शाकंभरी नेत्र चिकित्सालय से संबंधित है।

दुकान के बराबर में दो मीटर लगे हुए है और उसी के बराबर में गेट भी है जिस पर ब्राउन कलर का पेंट हुआ है।

दुकान के बाहर संजय एयर कंडीशनर वर्क्स लिखा हुआ है और अंदर कुछ एयर कंडीशनर्स दिख रहे हैं।

एक पिक्चर है जिसमें की एक हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है हॉस्पिटल के ऊपर प्लस का साइन बना हुआ है बाहर हिंदी में राठी उपकार हॉस्पिटल लिखा हुआ है।

पीछे कुछ दवाइयां भी रखी हुई है और ऊपर एक पंखा चल रहा है।

यह घास एक कलाकारी एवं इंग्लिश के अल्फाबेट्स में काटी गई है।

दुकान के बराबर में एक और बोर्ड है जिस पर त्यागी ऑटो पार्सल लिखा हुआ है।

मजदूर कुछ उसमें पानी दे रहे हैं कुछ उसमें सीमेंट बिछा रहे हैं बीच में एक लंबा सा पाइप भी रखा हुआ है।

सामने ही उसका गेट भी खुला हुआ है उसी के बराबर में तीन आदमी जा रहे हैं।

जिसे देखते हुए दो आदमी खड़े हैं और पीछे एक महिला एवं एक आदमी कुछ खरीदारी कर रहे हैं।

बीच में दो इटियां या भी रखी हुई है और सामने कुछ और बिल्डिंगे भी दिख रही है जिनका रंग सफेद है।